एक विंडो दिख रहे हैं सीएमपत एक सीएमपत दिख रहे हैं।

यहाँ पे मिट्टी खुदाई का काम चल रहा है। इस तस्वीर में एक जे.सी.बी. मिट्टी खोदते हुए दिखाया गया है। कुछ --

अपना गरमा खेती कर रे हैं।

यहाँ पे घर बन रहा है घर में छत ढलाई का काम चल रहा है।

छत ढलाई का काम चल रहा हैं और ऊपर --

दाहिना हाथ से पकड़े हैं।

और स्कूल के पीछे एक आलीशान बिल्डिंग है।

बहुत सारे स्मार्टफ़ोन है। फ़ोन हई दुकान में ।

बिल्डिंग दिखाई दे रही जिसमें बहुत सारी खिड़कियाँ हैं।

ग्रिल है जो मैन गेट पे लगा हुआ है और इस ग्रिल में बहुत --

टेम्पो भी लगा हुआ है।

बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं।

और मोटा मोटा पंखा है।

यह एक तस्तरी है। तस्तरी में दो कप --

मोबिल यानी की बहुत सारे समानो --

पास एक डस्टबिन लगे हुवे हैं डस्टबिन के पास एक पोछा लगाने वाला--

टमाटर गाजर नींबू आलू --